इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे दो पहले बरे बरे बरे पेड़ लगे हुए हैं।

आदमी जो हैसीरी के ऊपर वह जाना चाहता है ऊपर तक जाना बगल में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग नीचे भी बैठे हैंऔर बगल में आप पेड़ भी देख सकते हैं।

ये हरे दिख रहा है एक पैर जो है वो मंडप के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है यहां पे मंडप इसको बोल सकते हैं हम लोग।

ऊपर एक पंडाल लगा हुआ है जो कि बहुत पूरी वाइट उजले कलर का लगा हुआ है एक गाड़ी लगी हुई है बगल में--

और उस गाड़ी के बगल में दो महिला खड़ी है एक महिला का जो है वो पीले कपड़े में खड़े हैं और एक आदमी एक और महिला जो उजले कपड़े में सब भगवान की आरती करते हुए --